सामने मुझे एक कांच की बॉल दिखाई दे रही है।

इस फोटो पर मुझे एक स्टोअर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर सामने मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और मुझे सामने की तरफ दो आदमी खड़े नजर आ रहे हैं।

आदमी ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी दिखाई दे रही है।

ट्रैक्टर के ऊपर मुझे एक टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कार के पीछे मुझे कुछ हरी घास लगी दिख रही है।

सामने मुझे कुछ महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो पर सामने मुझे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

पत्थरों के बीच में मुझे एक गुफा दिखाई दे रही है गुफा के अंदर मुझे दो आदमी--

सामने मुझे कुछ आदमी बैठे और खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने ही मुझे कुछ बॉटल रखी दिखाई दे रही है।

बरनी में बिस्किट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने बोर्ड पर कुछ चित्र बने दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर सामने कुछ टेबले रखी दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर सामने एक दीवार दिखाई दे रही हैं।

और कूर्सीया रखी नजर आ रही है सामने मुझे कुछ नाइट लैंप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो पर मुझे एक आदमी नजर आ रहा है।